ट्रैन स्टैंड है यहाँ एक स्टेशन है जहा पर ट्रेन आकर रूकती है बहुत ही लम्बी बड़ी ट्रेन लगी हुई हैं।

इस फोटो को देककर हम ये कहरहे है की यह एक मोटा भँस तस्वीर है।

गए है कुछ पेड़ पोधे भी लगाये गए है आसमान निर्मल नजर आ रहा है।

इसकी रंग बिरंगे दिवार बहुत खूब सुन्दर लग रही है काफी शांत माहौल नज़र आ रहा है।

इस पिक्चर को देककर हम ये कह सकते है की यह एक संस्थान की फोटो है जहा पर कई सारी बाइक नज़र आ रही है जिसमे पार्क आ बाइक पार्क की हुई हैं।

इस पिक्चर में हम ये कह सकते है की यह एक रेलवे स्टेशन है रेलवे स्टेशन के सामने एक छोटी सी पटरी में रखी गई है रात होने के कारण यहां पर सब कुछ शांत हो चूका है ।

इस पिक्चर को देख कर हम यह कह सकते हैं की यह एक रिसेप्शन मॉल है जहां पर रिसेप्शन सामग्रियां रखी गई हैंयहाँ पर हरे रंग-रंग के सोफे और बहुत सुन्दर पर्दे और ऐ.सी. भी लगाई गई है।

यह एक रेल्वे स्टेशन है जहा पर कई सारे रेल रुके हुए दिखाई दे रहे है दूर-दूर तक--

रहे है निचे जमीं में काफी हरी हरी घास भी उगी जा चुकी है जो की काफी सुन्दर दिख रही है।